यहाँ एक आदमी संतरी कपड़े पहने हुए है।

आदमी तोड़ रहे हैं और औरतें भी तोड़ रही हैं।

नीचे गाड़ी भी खड़ी हुई है।

यह बहुत बड़ी कंपनी दिखाई दे रही है। ऊपर कुर्सी भी बिछी हुई है।

और यहां लोहे की जाली भी लगी हुई है।

और नीचे एक मेज भी रखी है और बहुत सारे बोर्ड भी लगे हुए--

यह सुंदर बर्तनों की दुकान है। यहां अच्छे अच्छे बर्तन मिलते हैं।

तीन चार आदमी माला सुंदर पहन रखी है।